बहोत सारे बिल्डिंग्स देख सकते है और छोटे हरे घास भी देख सकते है।

ये हम देख सकते हैं बहुत ही बड़ा टीन का शेड और यहां--

कुछ मजदूर काम कर रहे हैं और यहां हम ब्लू कलर का पर्दा भी देख सकते हैं और यहां पर बहोत सारे ग्रिल्स भी रखे हुए है।

यहां पे कुछ मजदूर है और वो लोग यहां पर कुछ सीमेंट का काम कर रहे हैं।

ये एक छोटी दुकान है और दुकान पे हम बोर्ड देख सकते हैं और नाम हैवेल्स है।

और यहां पे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं और बहुत सारे हरे पेड़ है और यहां पे --

ये एक छोटी दुकान हैं यहाँ पे बच्चों के खिलोने हैं जैसे कैरम है टॉयस हैं गुड़िया हैं और कार्स भी हैं।

अह ग्रिल भी देख सकते हैं और यहां पे मिट्टी का रंग लाल है।

यहां देख सकते हैं पानी की झरने को और यहां पे बहोत सारे बड़े बड़े पत्थर है।

यहां पे कुछ लोग योगा कर रहे हैं और यहां पे हम योगा मैट भी देख सकते हैं।

वहा हम बहोत बड़ा ब्रिज देख सकते हैं और यहां पे बहुत सारा पानी है।

बहोत सारे ऐ_सी इंजन इलेक्ट्रिक रिपेयर के कार सर्विसेज अवेलेबल है और यहां पर हम टीन का सेट भी देख सकते हैं।

बहोत सारे पहाड़ देख सकते हैं और यहां पे बड़े बड़े नारियल के पेड़ भी है और हम यहां छोटे हरे भरे--

घास भी देख सकते हैं और यहां सफेद रंग की बिल्डिंग भी है।